इसमें अंदर की तरफ राधा रानी दिखाई दे रही हैं ऊपर की तरफ एक पंखा चलते हुए दिखाई दे रहा है।

नीचे की तरफ बहुत सारे शटर के गेट दिखाई दे रहे हैं जो बंद है।

साइड में एक और बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पे न्यू अमर लिखा है।

एक आदमी आगे की तरफ खड़ा है जिसने लाल रंग की टी शर्ट और ग्रे कलर की जींस डाले हुए हैं।

एक ट्रक का मुंह दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है वे जिसका दरवाजा खुले हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक स्टेज सजा हुआ दिखाई दे रहा है जिस पे रंग बिरंगी लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं।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

टीन डाली हुई है साइडों में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक भट्ठे की इमारत दिखाई दे रही है ऊंची चीज इसपे लाल रंग का पेंट हो रखा है।

और आगे की तरफ एक लाल रंग की कुर्सी पड़े हुए दिखाई दे रही है व कुर्सी के ये खाली ट्रे दिखाई दे रही है।

सामने एक गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ जाली लगी हुई है।

यहां पर एक लड़का बाहर की तरफ खड़े हुए दिखाई दे रहा है जो फोन चलाते हुए है।

एक साइड में लोहे का गेट दिखाई दे रहा है और ऊपर की दीवाल पर बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं।

व बहुत सारे सूट साइड में लटके हुए दिखाई दे रहे हैं जो रंग बिरंगे कलर के हैं।

बड़े रजिस्टर रखे हुए हैं आ साइड में एक प्रिंटर दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

द ऊपर की तरफ एक छत दिखाई दे रही है। उसपे भी पैनल लगा हुआ है जिस पे भी कुछ तेलुगु में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने पीले कलर के बॉर्ड पर लाल अक्षरों से इंग्लिश में दानिश प्रिंटर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

आगे की तरफ कुछ टीले दिखाई दे रहे हैं जो मिट्टी के हैं जिसके ऊपर छोटी छोटी घास फूस जमी हुई है।

चारों तरफ और आगे की तरफ बहुत सारे टिले दिखाई दे रहे हैं जो पहाड़ के हैं।

कुछ बहुत सारी मेजे पड़ी हुई है जिनके ऊपर शिशा रखा हुआ है।

कुछ गमलें ग लेंटेन आगे की तरफ लटकी हुई दिखाई दे रही है बै सामने की तरफ एक नली सा पुता घर भी दिखाई दे रहा है।

एक घड़ी लगे हुए दिखाई दे रही है घड़ी के नीचे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे वाश बेसिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर की तरफ एक लोहे की छत दिखाई दे रही है जो बहुत विशाल है।

साइडों में ये कुछ चीजें रखी हुई है जो लोहे की है आगे की तरफ बहुत सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं।

एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे हिंदी में पतंजलि लिखे हुए हैं।

यहां एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने गले में दुपट्टा डाले हुए है।

अंदर की तरफ भी बहुत सारे ट्रैक्टर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो सफेद वह लाल रंग के हैं।

बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है व कुछ खंभे दिखाई दे रहे हैं सीमेंट के जो लाल कलर के हैं।

आगे की तरफ नो स्मोकिंग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है व उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी है जो सफेद कलर की है।

यहां पर एक मंडप सजा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके गेट पर फूलों की मालाएं लटकी हुई व सजावट बनी हुई है।

अंदर की तरफ बहुत सारे झालर लटके हुए है जो रंग बिरंगे कलरों के है।

इसपे सफेद कलर के नंबर प्लेट मे यू_पी बत्तीस एच एस चार सौ तेईस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की तरफ एक टायर दिखाई दे रहा है और आगे की तरफ एक बी_ए बाए सेवन लिखा हुआ दिखाई दे रहा।

यहां पर हिंदी में भगपति जी स्वीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और साइड में हिंदी में आंखों की जांच मुफ्त लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

अंदर की तरफ छत पे एक ट्यूबलाइट जलती दिखाई दे रही है।

उसपे कुछ आर्टिफिशियल फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं व ऊपर की तरफ पर्दे लटके हुए हैं।

एक ब्लैक कलर के बंडल के ऊपर ऑरेंज कलर का कपड़ा पड़े हुए दिखाई दे रहा है।

और एक मिट्टी का फरस फर्श दिखाई दे रहा है आगे की तरफ भी बहुत सारे बंडल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जो सिल्वर कलर के हैं।

पीछे की तरफ दो कार दिखाई दे रही है एक कार का रंग सफेद है एक कार का रंग नीला है।